मंदिर के खम्भे जो हैं पिलर वो कत्थई कलर के हैं।

उसके पास में एक मस्जिद बनी हुई है जिसकी पट्टी नीले कलर की है और व्हाइट कलर से वो पुत्ती हुई है अंदर लेडीज जा रही है।

कुछ महिलाएं भी आते जाते नजर आ रही हैं। कुछ युवक भी काम करते दिखाई दे रहे हैं।

जिसके अंदर की तरफ मुझको कुछ ऑफिस दिखाई दे रहें हैं सामने रिसेप्शन दिखाई दे रहा है उसपे एक कंप्यूटर एक उसके सामने चेयर रखी हुई है चैनल गेट लगा हुआ है जिसका कलर व्हाइट है।

यह एक इलेक्ट्रिकल रूम की तस्वीर है इसमें मुझको बहुत सारे मीटर और लाईट जलती हुई दिखाई दे रही है।

यह एक गली की तस्वीर है गली में से ई-रिक्शा निकल रहा है उसके बाजू में से एक बाइक पे युवक निकल रहा है।

इस तस्वीर में मुझ को झुग्गी-झोपड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझको एक इलेक्ट्रिकल पोल दिखाई दे रहा है कच्ची सड़क दिखाई दे रही है पीछे की तरफ कुछ पत्थरो का गुंबद नुमा बना हुआ है।